जो > खुला बंद दिखाई दे रहा है उसके सामने पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं। बा ग्राउंड में बहोत सारी साइकिलें खड़ी दिखाई दे रही हैं। । एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है।

अम्म सामान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी जेब में हाथ डाले दिखाई दे रहा है।

ये एक अ लड़का दिखाई दे रहा है जो हार्ट शेप बलून्स से कुछ हार्ट शेप बलून्स से बना हुआ हार्ट बना दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट सामने एक लड़का --

सामने एक बनियान पर सोये लोग के अम्म अम्म्म एक लड़का खड़ा हुआ है।

और ये चर्च की दीवाल है। ये पूरी ग्रे कलर की दिखाई दे रही है। चर्च के सामने जो गार्डन है उसमें --

है कुछ पेड़-पौधे ग्रे कलर के और कुछ ग्रीन कलर के दिखाई दे रहें हैं।

एक चर्च दिखाई दे रहा है। चर्च के सामने दो लोग पादरी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ जेंट्स लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बेडरूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर दो ब्लैंकेट रखे दिखाई दे रहें हैं। दो तकिया रखी दिखाई दे रहें हैं और एक झोला रखा दिखाई दे रहा और एक खिड़की --

सैनटिंग कैसी दिखाई दे रही है। बाहर भी सैनटिंग कैसी दिखाई दे रही है। ये ईटे लोम--

और कुछ यहाँ बेबी गर्ल की फ्रॉक टंगी दिखाई दे रही है।

एक बर्थ डे केक दिखाई दे रहा है जो टेडडडडीज़ के ऊपर तीन रखे गए हैं। यहाँ पर कुछ बॉल दिखाई दे रही है कुछ आइसक्रीम --

एक म्यूजि-क स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग सिंगिंग करते दिखाई दे रहे।

और चियोडे ट्रेय अलग-अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर बोहोत सारे खाने पीने की चीज़े रखे दिखाई दे रही हैं।